लिबर ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति डॉक्युमेंट बनाना और बुनियादी फोर्मटिंग के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम इम्प्रेस विंडो के भागों के बारे में सीखेंगे और कैसे स्लाइड इन्सर्ट करें और कॉपी करें फॉन्ट तथा फॉन्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
चलिए अपनी प्रस्तुतिप्रेजैटेशन सैंपल इम्प्रेस ओपन करते हैं जिसे पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था
चलिए देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या क्या है
मध्य में हम खाली जगह देखते है जोकि वर्कस्पेस है जहाँ हम काम करेंगे
जैसे कि आप देख सकते हैं वर्कस्पेस में 5 टैब्स हैं जिन्हें व्यू बटन्स कहते हैं
फिलहाल नॉर्मल टैब चुनित हैं
यह मुख्य व्यू है अलग अलग स्लाइड बनाने के लिए
आउटलाइन व्यू प्रत्येक स्लाइड के आउटलाइन फॉर्मेट में विषय शीर्षक बुलेटेड और क्रमांकित सूचियाँ बताता है
नोट्स व्यू प्रत्येक स्लाइड में नोट जोड़ने की सुविधा देता है जोकि प्रस्तुतिकरण के वक्त नज़र नहीं आते
हैंडआउट व्यू स्लाइड्स को हैन्डाउट के रूप में प्रिंट करने की सुविधा देता है
यहाँ हमें एक पेज पर कितने स्लाइड प्रिंट करने हैं इसका चुनाव कर सकते हैं
स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स की थम्बनेल बताता है
अब फिर से नॉर्मल व्यू बटन पर क्लिक करते हैं
स्क्रीन की बाईं ओर आप स्लाइड्स पैन देखते हैं
यह प्रस्तुति में स्लाइड्स के थम्बनेल सम्मिलित करता है
दाएँ तरफ टास्क्स पैन हैं जिसमें अनुभाग है
लेआउट्स सेक्शन में पहले से ही कुछ सैम्पल लेआउट्स मौजूद हैं
हम उनका उपयोग ऐसे ही कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार कुछ बदलाव करके उपयोग कर सकते हैं
जैसे जैसे हम इन ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ेंगे इन सेक्शंस को विस्तार में देखेंगे
चलिए अब सीखते हैं कि कैसे स्लाइड को इन्सर्ट करें यानि जोड़ें
स्लाइड्स पैन में दूसरी स्लाइड पर क्लिक करके उसे चुनें
अब इंसर्ट और स्लाइड पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि दूसरी स्लाइड के बाद एक नई खाली स्लाइड जुड़ गई है
स्लाइड पर शीर्षक लिखने के लिए टेक्स्टबार में क्लिक टो एड टाइटल पर क्लिक करें
अब शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी टाइप करें और टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करें
अतः शीर्षक इस तरह से जोड़ सकते हैं
यहाँ दो तरीके है जिससे हम स्लाइड की प्रतिलिपि डुप्लिकेट बना सकते हैं
पहले तरीके को देखते हैं Insert पर क्लिक करें और फिर डुप्लिकेट स्लाइड पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि एक नई डुप्लिकेट स्लाइड हमारी पहली बनाई गई स्लाइड के बाद जोड़ी गई है
या तो वर्कस्पेस पैन में जाकर स्लाइड सॉर्टर क्लिक करके स्लाइड सॉर्टर व्यू पर जाएँ
अब सातवीं स्लाइड को कॉपी करें
स्लाइड पर राइट क्लिक करें और कांटेक्स्ट मेन्यू से कॉपी चुनें
आखरी स्लाइड पर राइट क्लिक करें
पस्ते पर क्लिक करें
आफ्टर चुनें और ओक क्लिक करें
प्रेसेंटेशन के अंत में आपने स्लाइड की एक कॉपी बना ली है
चलिए अब फोंट्स और फोंट्स को फॉर्मेट करने के कुछ तरीके देखते हैं
लोंग टर्म गोल नामक स्लाइड पर डबल क्लिक करके उसे चुनते हैं
बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और पुरे टेक्स्ट को चुनें
अब इसे डिलीट करें
अब निम्न टाइप करें160 रिड्यूस कॉस्ट्स रिड्यूस डिपेंडेंस ओन फेव वेंडर्स डेवलप कस्टमाइज्ड एप्लिकेशंस
लिबरऑफिस रायटर डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट का प्रकार और फॉन्ट साइज़ को जिस प्रकार बदला था यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं
टेक्स्ट की एक लाइन चुनें Text फॉर्मेट टूलबार में फॉन्ट टाइप को अल्बेनी से एरियल ब्लैक में बदलें
और फॉन्ट साइज़ को 32 से 40 में बदलें
टेक्स्ट बॉक्स से बाहर कहीं भी क्लिक करें
ध्यान दें कि फॉन्ट बदल गई है
हम मेन मेन्यू से फॉर्मेट पर क्लिक करके और फिर कैरेक्टर ऑप्शन पर क्लिक करके भी फॉन्ट को बदल सकते हैं
यह एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा जिसमें हम अपनी आवश्यकतानुसार फॉन्ट स्टाइल और साइज़ सेट कर सकते हैं
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं
फॉन्ट का कलर बदलने के लिए हम डेवलपमेंट यूपी टो प्रेजेंट नामक स्लाइड को चुनते हैं
बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और फिर सारे टेक्स्ट को चुनते हैं
फॉन्ट कलर आइकन के पास में डाउन एरो पर क्लिक करें और जो चाहिए वो कलर चुनें
टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करें
कलर में हुए बदलाव को देखें
लिबरऑफिस डॉक्यूमेंट्स में जिस प्रकार से बोल्ड इटालिक और अंडरलाइन जैसे फॉर्मेटिंग की थी यहाँ भी उसी प्रकार से कर सकते हैं
रिकमेंडेशंस नामक स्लाइड को चुनें
बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और टेक्स्ट की एक लाइन चुनें
अब बोल्ड इटालिक और अंडरलाइन आइकन पर क्लिक करें
टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करें
टेक्स्ट में हुए बदलाव पर ध्यान दें
अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा
इस ट्यूटोरियल में हमने इम्प्रेस विंडो के भागों के बारे में सीखा और कैसे स्लाइड इन्सर्ट करें और कॉपी करें फॉन्ट तथा फॉन्ट को फॉर्मेट करना सीखा
इस व्यापक नियत कार्य की कोशिश करें
एक नयी प्रस्तुति बनाए
तीसरी और चौथी स्लाइड के बीच एक स्लाइड जोड़ें
प्रस्तुति के अंत में चौथी स्लाइड की एक कॉपी बनाए
दूसरी स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए
उसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करें
टेक्स्ट के फॉर्मेट को 32 फॉन्ट साइज़ में बदलें
टेक्स्ट को बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करें और नीला रंग दें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken tutorialorg पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है
आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद